और यहां पे लोग मोमबत्तियां जलाते हैं।

और हुंडई की गाड़ियां बोहोत ही सुरक्षित --

और यह काफी कंफर्टेबल कार है।

और लोग श्रद्धा भाव से आते हैं।

कोचिंगो में टेंथ की ट्वेलवैथ की--

जैसे कि लोग घूमते हैं।

देखते है सभी चीजों की दुकान यहां पे लगते है।

और अजान होती है यहाँ पे शाम को ।

क्योंकि गाड़ियों की मरम्मत करते हैं उसे ठीक करते हैं ।